यहां पे मुझे चार लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पे पीछे में एक घर भी है जो वाइट एंड रेड कलर में है।

इस पिक्चर में दो साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर पर मुझे दो आदमी दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे एक बंबू शूट का ट्रे भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे चार कर्टेन दिख रहे हैं येलो एंड व्हाइट ।

यहां पे मुझे एक बाल्टी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे आसमान भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे मुझे एक पीछे में ट्री भी नजर आ रहे हैं।

यहां पे मुझे एक वाइट कलर का पिलर भी नजर आ रहे हैं।

यहां पे एक ब्लैक कलर का बाइक भी रखा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक चर्च दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर पे मुझे घर भी बनाया हुआ दिख रहा है।

इस पिक्चर में मुझे प्रिंटर और डेस्कटॉप भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे आसमान दिख रहा है।

इस पिक्चर में हरे हरे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर पे मुझे एक येलो कलर का गेट नजर आ रहा है।

इस पिक्चर पे मुझे बहुत सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

यहां पे मुझे एक पर्पल कलर का कर्टन भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर पे मुझे बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे एक वाइट कलर का बल्ब भी नजर आ रहे हैं।